इस फोटो में एक बड़ा सा दरवाजा दिखाया गया है जिस पर एक बोर्ड लगा हुआ है जीस पर प्रवेश निषेध लिखा हुआ है।

जिसमें कुछ शीशों के दरवाजे लगे हुए हैं और बड़े बड़े गुब्बारे लगे हुए हैं जो की अलग अलग रंग के हैं।

इसके पीछे बहोत सारी सेफ रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

के लकड़ी का है नीचे कुछ फर्श दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ गड्ढे दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर से कुछ रसियां जो कि कपड़े की बनी हुई हैं नीचे की तरफ लटक रही हैं एक बड़ा सा स्विच दिखाई दे रहा है।

पास मे एक कार दिख रही है और एक बाइक सवार जाता हुआ दिखाई दे रहा है सामने कुछ स्कूटीया भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

और कुछ रपटन दिखाई दे रही है जिस पर से पानी आता हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने दो बाइके खड़ी हुई है और पीछे एक बड़ी सी कार खड़ी हुई है।

नीचे की तरफ कुछ दिखाई दे रही है जो लाल रंग की है जिसके चारों तरफ पेड़ खड़े हुए हैं।

नीचे कुछ ढोल बजाते हुए बच्चे दिखाई दे रहे हैं और औरतें दिखाई दे रही हैं।

नीचे एक पिज्जा हाउस दिखाई दे रहा है जिस पर कुछ पोस्टर चिपके हुए हैं और कुछ शीशे के दरवाजे लगे हुए हैं।

ऊपर की तरफ दीवारों पर कुछ पोस्टर चिपके हुए हैं।

इसके नीचे एक बड़ा सा तुंबा बना हुआ है जो लाल कलर का है सामने की तरफ एक घर दिख रहा है जिसके ऊपर एक लाइट दिख रही है।

इस पर एक ए_सी लगी हुई है ए_सी पर टेंपरेचर बताने का एक मीटर लगा हुआ है।

सामने दो वेंटीलेटर लगे हुए हैं और कुछ पाइप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं नीचे को कुछ त तार जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

रोड पर चार पांच लड़के खड़े हुए हैं और आगे की तरफ बिल्डिंग दिखाई गई है और कुछ सिक्चे बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामने कुछ मोटरसाइकिल खड़ी हुई है और कुछ साइकिले खड़ी हुई है।

दीवार पर एक पोस्टर लगा हुआ है इस पर एक आदमी और साइकिल बनी हुई है।

ऊपर की तरफ कुछ फूल लगे हुए हैं और कुछ झालरें लगी हुई हैं।

और सामने एक बड़ा सा सीट पड़ा हुआ है जो सीमेंट का है।

जो आपस में बात कर रहे हैं उन आदमियों के पास में एक पल्सर गाड़ी खड़ी हुई है और एक स्कूटी दिखाई दे रही है।

इस फोटो में सामने हरे और पीले रंग के कुछ पर्दे ऊपर की तरफ से नीचे लग बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक बड़ी सी लाइटें दिखाई दे रही है पीछे की तरफ कुछ घर बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस पर एक रिसेप्शन है रिसेप्शन पर एक ऊपर की तरफ पेटीएम का एक बड़ा सा बोड लगा हुआ है।

एक आदमी बात कर रहा है सामने पीछे कुछ लिखा हुआ है जो की ग्रास के ऊपर है।

पहाड़ के नीचे कुछ बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

लड़के के हाथ में एक फोन दिख रहा है। पीछे की तरफ एक जिम दिख रही है और जिम के कुछ लोहे के समान दिख रहे हैं।

इस फोटो में एक जूस सेंटर दिखाई दे रहा है जिसमें दो जूस की दुकान दिखाई दे रही हैं।

उसके साइड में ही दो कुर्सी और पड़ी हुई है जो की ब्लैक कलर की हैं।

इस फोटो में सामने एक बड़ी सी स्टेज दिख रही है जिसके पीछे एक लाल पडदा दिख रहा है जोकि चाने में चमक रहा है।

जिस पर एक नीला सा जाल लगा हुआ है और पीछे एक बंटी बनी हुई दिखाई दे रही है।